और एक बाहर भी गाडियाँ खड़ी हुई हैं बहोत सी और यहाँ पे टकराव --

और जो नीचे बिछाने ग् सब मिल जाएगा यहां पर आपको देख रहा होगा कांच का लगा हुआ है। दोकान है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है --